सिंडीकेट बैंक बैंक द्वारा ही मिल जाएगा अपनो को भी --

और सुबह के टाइम मना रहे बता। इन्हैं ठंड-वन्ड न लग रही।

और घर के सामने यहाँ के घर वालों को कुछ ना कहते।

ये तो पिंजराद है यहाँ तोते और ये कितने सारे तोते रहते हैं।

आलू रखे हैं। ते मंडी से मंडी से लाए दिखाए है ये खरीद के। अब दुकान पे दुकान ओकान खोलेंगे अपनी।

ये तो यार कोचिंग सेंटर खुला हुआ है भाई।

यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे और उनका अलग-अलग काम होगा यहाँ और कितना बढ़िया लग रही देख --

कितना बढ़िया फोटो आया इनका और पीछे देख बुकगार कितने बढ़िया लग रहे हैं।

हरे कलर के गुलाबी कलर के और सफेद --

अबे इस कार का कितना वो बना दिया इन्होंने कटारा बना दी।

और कित्ता बड़िया फोटो आया है। यहा लोग बाग जब सुभे को आते होंगे तो कित्ता मजा आता होगा ना घूमने में।

और बादल देख बादल कितने टॉप के दिखाई दे रहे हैं। है में व्हाइट कलर के।

और मेरा बेग भी फट गया बेग भी लियांगा वहाँ बुक सेलर पर से मिल जायेगा।

इतना मस्त गेट लग रहा है यार लंबे होंगे ऐसे लोहे का गेट ।